यह तस्वीर एक फल दुकान की ली गई तस्वीर है।

यहाँ काफी टेस्टी और रंग-बिरंगी मिठाई उचित मूल्य पे बेची जा रही है।

यहाँ काफी तरह के गिफ्ट् का सामान उपलब्ध है।